यहां पे एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में सभी लोग बैठे हुए हैं उसके बाहर रेस्टोरेंट के बाहर अम्म अम्म एक चेयर है।

यहाँ एक मछली वाला है। मछुआरा वो मछुआरा मछली को तालाब से निकाल कर --

यहां पे फ्रूट्स वगैरह बिक रहा है और दुकान है यहां पे ऑरेंज रखा हुआ है । ब्लैक वाला ग्रपेस रखा हुआ है । बनाना रखा हुआ है।

हम्म गर्मी का सीजन में लीची मिलता है। लीची खट्टा और मीठा बोहोत टेस्टी लगता है खाने में और ये साठ से अस्सी रुपया के_जी में मिलता है।

और नीचे घास वग़ैरा उगाया हुआ है। जाली मारा हुआ है।

यहाँ पे लक्ष्मी इंटरनेशनल एकेडमी है या स्कूल है। बच्चे लोग के --

यह पे बतक भी हैं । बतक ले काफी बच्चे घूम रहे हैं फिर रहे हैं ।